पूरा काउंटर साफ सुथरा है।

इस तस्वीर में एक सुंदर हरा भरा पार्क दिख रहा है।

इसमें एक टाइल वाला पार्ट घुमावदार तरीके से जाता है।

बगल में छोटे हरे पौधों और पेड़ो लगे हैं।

बैनर पर मोबाइल कंपनियां की विज्ञापन दिख रहा है।

वातावरण हलचल से भरा है।

इस फोटो में एक छोटा स्केल का पोल्ट्री सेटअप दिख रहा है।

जहां बहुत सारे छोटे छोटे चूजे रखे गए हैं।

से वे वार्म ले रहे हैं जमीन पर कुछ फीडर्स और वॉटर डिस्पेंसर रखे हुए हैं।

अंदर की ओर एक बड़ी खिड़की है जिससे प्राकृतिक रोशनी आ रही है।

कई तरह की बर्बेल्स एक स्टैंड में रखे हुए हैं दीवार के पास वेट प्लस लगे हुए हैं।

अलग अलग वजन के हैं।

फर्श पर रबड़ मेटिंग लगी हुई है जिससे सेफ्टी रही है।

ये तस्वीर एक बैंक के अंदर का दृश्य दिखाती है।

जहां सजावट में नीले गुलाबी और सफेद गुब्बारे छत पर लटके है।

सामने क्रॉस दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में त्रिपुरा विद्या विद्यालय की सेंट्रल लाइब्रेरी का एक दृश्य दिखाई दे रहा है।

डेस्क के पीछे कुछ कुर्सियां और टेबल है।

छाया इमारत की दीवार पर पड़ रही है।

जो मछली पालन या वर्मी कल्चर से संबंधित हो सकती है।

बाई ओर सफेद रंग के खनचे वाले बक्से रखे गए हैं।

दुकान में लेकिन भरी हुई लग रही है जिससे यह एक व्यस्त बाजार की झलक देती है।

स्वच्छ अभियान का उल्लेखा किया गया है।

दीवारों पर एस_एस पेंटिंग और कुछ जानकारी प्रस्तुत है।

पृष्ठ भूमि में मिट्टी का फर्श एक नीला छाता और अन्य बर्तन नजर आ रहे हैं।

और रोशनी से क्षेत्र उज्जवल नजर आ रहे हैं।

रंग बिरंगी लाइटिंग और बैकग्राउंड में प्रतिष्ठित विषय प्रस्तुति को और प्रभावशाली बना रहे हैं।

जहां खूबसूरत डिजाइन वाला खंबा रोशनी के साथ आकर्षक दिख रही है।

बिजली की तार लटके हुए हैं।

आस पास हलचल दिख रहा है।

आसमान बादलों से ढका है जिसे मौसम सुहाना लग रहा है।

जहां नीली लकड़ी के बेंच और लाल टेबल रखी है।

ये तस्वीर एक सुंदर बगीचे को दर्शाती है।

पौधों को गमले में लगाया गया है।

पीछे झोपड़ी नुमा संरचना और पेड़ो की हरियाली इस स्थान को प्रकृतिक सौंदर्या प्रदान कर रही है।

यहां हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता मौजूद है।

जिसमें एक पुरानी इमारत हरा भरा वातावरण और कच्ची ईटों से बनी सड़क नजर आ रही है।

साफ सुथरा वातावरण माहौल को सुखद बनता है।

डिस्पेंसर मशीन लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक व्यक्ति सफेद शर्ट पहने हुए चाय पी रहा है।

जिसपर सबडिजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय लिखा हुआ है।

इमारत का डिजाइन आधुनिक है।

इसमें नीले और गुलाबी रंग का संयोजन किया ग--

ये तस्वीर में एक सफेद रंग की दो मंजिला इमारत को दर्शाती है।

बाउंड्री के बाहर एक ऑटो खड़ा है जिससे यह व्यस्त स्थान लग रही है।

व्यक्ति ने काला शर्ट पहना है और हाथ में पानी की बोतल पकड़ी हुई है।

यह तस्वीर एक छोटे पुस्तकालय या अध्ययन कक्ष को दर्शाती है।

कक्षा हवादार प्रतीत होता है।

ये तस्वीर बालूरघाट हवाई अड्डा के प्रवेश द्वार को दर्शाती है।

कुछ बाल्टियां और बर्तन रखे हैं।

और आसमान में हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है।

पानी ऊंचाई से गिरकर नीचे बह रहे हैं जिससे एक मनमोहक दृश्य बना रहे हैं।

एक सीढ़ी ऊंची अलमारियां तक पहुंचने के लिए लगी हुई है।

एक व्यक्ति काउंटर पर खड़ा है।